कुछ अ छोटे- छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं। जिन्होंने अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है। टेंट यहाँ पर लगा हुआ है।

यह बड़ा सा तालाब है जिसमें दो बफैलो भैंस खड़ी हुई हैं। दोनों एक-दूसरे को अम --

लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है।

यह एक बैंक है जो कि एसबीआई है। इस इसमें एसबीआई का ब्लू कलर का लोगो लगा हुआ है।

यह कॉलोनी एरिया है जिसमें बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हुई हैं दस-दस खंड की मंजिलें यहाँ पर बनी हुई हैं।

जिम का कार्य किया जा रहा है और बड़ी-बड़ी मशीन रखी हुई हैं। कुछ लड़के यहाँ पर खड़े हुए हैं। सैंडो बनियान पहनी हुई हैं सभी ने।

और अन्य भी सामग्री हो सकती है। इस हाउस को पेंट पीले कलर से किया गया है अंदर वाइट कलर से किया गया है इस पर भारत पेट्रोलनियम लिखा गया --

चादर बिछाई गई है। जीने हैं। काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है कोई कार्यक्रम के लिए।

यह एक बड़ी चौड़ी-सी नदी है। जिसमे बड़ा-बड़ा भारी पुल बना हुआ है। बड़े-बड़े खंबे लगे हुए हैं।

यह एक बड़ा सा ग्राउंड है इवनिंग का टाइम है सूर्य अस्त होता दिखाई दे रहा है लाइटें जलते हुए दिखाई दे रही है।

और यह बड़ी-स् बड़ी होटल है जिसमें जिसमें काफी अच्छी तरीके से इसको --

ब्लैक कलर की हैं। रूम बहुत ही बड़ा है लंबा है ब्लैक कलर का पेंट व्हाइट कलर का पेंट पता हुआ है। पूरे रूम में लाइट्स जल रही हैं।

रेड कलर का है पेड़ भी लगे हुए हैं कुछ यहाँ पर कुछ मंदिर के पीछे लगे हुए हैं कुछ मंदिर के सा पास लगे हुए हैं पेड़ पौधे।

एसी सैलून यहां पर लिखा हुआ है। सिटी सेंटर सैलून यहां पर लिखा हुआ है ऊपर। अंदर की तरफ कुछ लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर रेड कलर की --

यहां पर एक गुलाबी कलर की गुलाबी और वाइट कलर की बस बड़ी सी बस खड़ी हुई है|